लड़के और लड़कियां दोनों का कपड़ा यहां पे है।

यहां पे कुछ काम चल रहा है शायद ये इंस्ट्रूमेंट का दुकान है।

यहां पे उन तबलो पे लगाने के लिए भी चीजे हैं वहां पे यहां पे एक आदमी काम करता हुआ दिख रहा है।

हेन दो तीन हैं दो तो चल रहे हैं एक बंद है।

लोगो है बी_एम_डब्लू मोटर्स सारे लिखा हुआ है यहां पे।

यह राम भगवान का चित्र लगा हुआ हैं।

उसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

ये एस_बी कंप्यूटर है ये एक कंप्यूटर का दुकान है।

विश्व भारती पुस्तक भंडार भी उसके साइड पे लगा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और एक साइकल भी है।

यह एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर--

एक साइड पर पे चेयर ही चेयर है।

यहां पे ओ_टी एण्ड आइ_सी_यू भी लिखा हुआ है तो ये एक हॉस्पिटल है। कोई लो--

यहां पे लिंबू है गाजर है।

ये एक इंडिया का पोस्ट ऑफिस है।

लोग जो है फूल यहां पे खरीदने आए हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

ये शायद एक सिनेमा हॉल है कल्याण मंडप--

यहां पे बहोत सारे लोग अपने बाइक और स्कूटी और यहां पे कार भी है।

यहां पे फिल्म पोस्टर बहुत सारे लगे हुए हैं।

पत्थर के नीचे घर जैसा बना हुआ है या फिर गुफ़ा जैसा बना हुआ है।

और यहां पे चोग टेबल है।

यहां पे एक घर है घर के सामने एक कार है।

कार पे क्विड लिखा हुआ है।

ये नज़ारा रात के समय का है।

स्कूल के अंदर बच्चे चीजे बना के अपने टीचर को दिखा रहे हैं।

ये साइंस मेला जैसा ही है।

बहोत सारे लोग यहां पे जमा हुए है।

क्रॉस का चेन पहने हुए है।

और यहां पे केंश भी रखे हुए हैं यहां पे शायद कलर्स है।

नवंबर को उन्नीस सौ साठ के साल पे--